ऊपर कुछ लाइट्स और पंखे लगे हुए हैं।

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट का है।

इसकी दीवार का कलर वाइट और ब्लू है।

इसमें काफी सारे कोल्ड-ड्रिंक्स और मेकअप के सामान मिल रहे हैं।

इसमें कुछ सीढ़ियां भी लगी हुई है।

इस पिक्चर में एक बड़ा सा ऑफिस दिख रहा है।

इसमें काफी सारी मछलियां दिख रही हैं।

इसके दीवाल का कलर पिंक है।

नीचे मिट्टी भी नजर आ रही है।

और ऊपर कुछ लाइट्स भी लगी हुई है।

ये पिक्चर एक बड़े से रिजॉर्ट की है।

इस पिक्चर में एक काफी भरी--

इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

ग्रीन कलर का घर दिख रहा है।

स्ट्रक्चर बनाए गए हैं।

ये पिक्चर एक बड़े से--

जिसमें बास्केट बॉल नेट लगा हुआ है।

यह पिक्चर एक बड़े से फैक्ट्री का है।

नीचे की साइड चावल दिख रहा है।

ऊपर कुछ लाइट्स भी लगी हुई है।

इसमें कुछ व्यक्ति भी--

इसके दीवार का कलर --

मिरर्स भी दिख रहे हैं।

इसमें एक डैम भी नजर आ रहा है।

पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह पिक्चर एक मैरेज हॉल का है।

और इसकी स्टेज काफी सुंदर है।

ऊपर कुछ लाइट्स भी जल रही है।

काफी सारी बाइक्स खदी है।

इसमें एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

फोटो एल्बम्स भी टंगे हुए हैं।

इसमें काफी सारी चेयर्स लगी हुई हैं।

और इसके दीवार का कलर वाइट है।

इसमें कुछ व्यक्ति भी--

काफी सुंदर स्टेज को सजाया गया है।

इसमें एक काफी बड़ा कारखाना भी दिख रहा है।

जिसमें दो बच्चे और एक व्यक्ति--

गेट भी दिख रहा है।

ब्लू कलर की एक--

पीछे की साइड एक मिट्टी से बना हुआ माउंटेन भी है।

और इसमें कुछ व्यक्ति भी--

जिसमें काफी अच्छी डेकोरेशन की गई है।

डिज़ाइन बनाई गई है।

ब्राउन येलो और क्रीम है।

इस पिक्चर में कुछ दुकान दिख रही है।